और इस मंदिर के ऊपर कुछ कबूतर बैठे हैं।

और एक बड़ा सारा हवेली की तरह--

इस दृश्य के अंदर काफी आदमी खड़े हैं।

और इनके व्हाइट कलर के वस्त्र पहन रखे हैं।

और इसमें एक ऊंट पानी पी रहा है और कुछ आदमी खड़े हैं।